इसकी जमीन ईटों से बनी हुई है और एक राइट साइड में भारी वृक्ष खड़ा हुआ है।

चित्र में एक रोडवेज बस का दृश्य नजर आ रहा है।

पार्क के भीतर बहुत भारी और बड़े बड़े हरे पेड़ हैं।

उसके हाथ में काले कलर की हैंडल पकड़े हुए हैं।

सभागार के ऊपरी छोर पर लाल रंग से मां कल्याण सिंह सभागार ललितपुर लिखा हुआ है।

एक झोपड़ी नुमा राइट साइड में घर दिखाई दे रहा है जिसकी चार विंडो नजर आ रही हैं।

यहां एक लकली की मेस पड़ी है जिसका कलर ---

जो एक दूसरे को पुरस्कार देते हुए फोटो क्लिक हुए हैं।

दूसरी महिला बैग लिए हुए राइट साइड में बैठी है जिसके हाथ में फोन है और वो बात कर रही है।

ये एक शोभा यात्रा का चित्र है ये बहुत ही कलरफुल है इसमें हरा गुलाबी रंग लगा हुआ है।

गमलों गमलों का बाहरी कलर सफेद है और उनमें छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं।

पिक्चर में एक व्यक्ति नजर आ रहा है जो पीले कपड़े पहने हुए है नीचे काला प्लाजो पैंट पहने हुए है और उसकी पीठ पर फिरोजी रंग का बैग है।

सबसे नीचे लेफ्ट साइड में दूबे अल्ट्रासाउंड सेंटर एंड क्लिनिक नजर आ रहा है।

तस्वीर में दो व्यक्ति सीढ़ियाँ चढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं।

और इस पर बहोत ही बारीकी से नकाशी की हुई है।

अंदर एक बुद्ध की गोल्डन रंग की मूर्ति रखी हुई है।

जिसके ऊपरी छोर पर एक चित्र बना हुआ है जिस पर लिखा है परिवहन निगम।

ये किसी रूम का दृश्य है जिसमें एक कवर्ड बनी हुई है।

ये व्यक्ति काले कलर के कपड़े पहने खड़ा है जो स्कूटी के पास है।

उसका द्वार ब्राउन कलर का है और लाल रंग की झंडिया लगी हुई है।